यह एक मॉल है जहां विभिन्न प्रकार के कपड़ा मिलता है जिसमे लेडीज और जेंट्स कुछ बच्चो का भी कपड़ा है ठंड का भी कपड़ा है।

यहाँ एक दूर दराज मै मंदिर है जहां हल्दी का पेर है केला का पेर है पीछे बास का पेर है और मंदिर इतना ऊँचा है की उसके घुंमट पे भी सीढ़ी लगा हुआ है।